व्हाइट कलर किया हुआ बहोत सारे बड़े-बड़े वृक्ष है छोटे-छोटे और भी वृक्ष है छोटे-छोटे घास है।

मट्टी है रास्ते हैं कुछ पत्थर है झुलास है।

आलू टाइप्स का कुछ है छोटे-छोटे घास है पौधे हैं गेरेज टाइप का बना हुआ है।

एस_बी_आई का एक ए_टी _एम है जिसपर अंदर एक लड़का है जो ए_टी _एम से कुछ पेसे वेसे निकाल रहा है ए_टी _एम मशीन रखे हुए है।

बहोत सारे निचे कुड के डब्बे भी रखे हुए है हैंगर है हेंगर पे सब टंगे हुए है हैंगर ब्लैक ब्लैक में है उसपे वाइट वाइट करके--

कुसी है टेबल प्लाई का ऊपर किया हुआ है नीचे लोहा टाइप्स का है उम्म स्थ अप सोफा का जो चेयर है वो भी--

गद्दा टाइप उसमें ब्लैक ब्लैक बिछा हुआ है और एक बड़ा सा एक--

रेड कलर पर है उसमे लम्बे लम्बे बोहोत सारे पिल्लर्स है।

बाहर नाव एक बुक पर लिखा हुआ है एक गार्डन टाइप --

बेल्कुनी टाइप का है जिसपे काच लगे हुए है सोफास है सोफा पर बोहोत कुसन रखे हुए है।

टेबल टाइप का है लैंप है अ कुछ रिमोट टाइप का है एक टी_ वी है एल_ सी_ डी_ ऊपर सिले--

और गुम्मवद टाइप का बना हुआ है मंदिर--

पार्लर टाइप्स का दिख रहा है जिसमें बहोत कुछ बच्चे बैठे हुए हैं दो बाहर एक--

पुल है बाल्टी है पानी का टेंकी टाइप्स का है दो साईकिले है अम्म बाइक है।

बगल में फेन का स्टोर टाइप में जिसमे बोहोत सारे फेन है अन्दर कुछ समाने है एक आदमी है खड़ा--

वो प्लाई टाइप के बने हुए है निचे कारपेट बिछा हुआ है एल_इ _डी बॉ--

होटल टाइप्स का बड़ा सा दिख रहा है जिसमें ऊपर फॉल सीलिंग का काम है बहोत सारे फॉल सीलिंग --

में एल_ ई_ डी लाइट्स लगे हुए हैं व्हाईट व्हाईट कलर के सोफा बहुत बिछे हुए नीचे बैंगनी कलर में नीचे कार्पेट है।

पाइप लगा हुआ है उसपे कुछ कुछ टंगे हुए कुछ नीचे कॉफी मग टाइप के रखे हुए हैं।

उम्म इन्हें बोहोत सुन्दर से सजा कर के रखा गया है।

मेज़ है एक टेबल है टेबल पर कुछ रखा हुआ बगल में एक पोस्टर टाइप है जिसमे कोई डिजाइन बने हुए है।

हरे है उम्म्म बड़े बड़े पेड़ है छोटे मोटे पोधे है।

पेट्रोलियम टाइप का कुछ शॉप है जिसके बाहर छोटे छोटे घास पोधे वोधे लगाये गये है पेड़ है।

पोस्टर पे लिखा गया है तनेजा पेट्रोलियम कुछ स्टॉप करने के जगह हैं टेंकीस हैं।

के लिए भी गाछ सब है बड़े बड़े पौधे है खजूर के गाछ है माटी है।

ट्रक सभ में डाल रहा है छोटे छोटे ट्रको में--

अ कुछ कच्चे रास्ते टाइप के हैं स्टेशन बस स्टेशन टाइप के हैं पोल हैं तारे हैं।

माटी का रास्ता है छोटे छोटे घास है अ सन सूरज ढूब रहा है।

एक गार्डन हाउस के टाइप्स का दिख रहा है जिसमें एक घर बना हुआ है एक बैठने का सीट है।

फूलों का गास लगा हुआ है लाल वाइट पिंक पिंक पिंक जगह है एक घर है विन्डोज है।

मशीन है नीचे पक्का है कुछ तारे हैं तारे हैं उम्म रेड में येलो में ब्लू में कुछ ऊपर भी तारें की गई है।

डब्बो पे चूडिया है अ क्रीमस है ऊ का उसको वाइट बोडर दिया गया--

बोहोत बड़ा ग्राउंड टाइप का है जिसमे बोहोत सारे गढे किये हुए है माटी है कुछ पत्थर है।

आलू है इत्ता है जो की साइड में सजा कर के रखे गये।

तार है एक घर है जो कम्पलीट नही है फ्लैट टाइप के बोहोत सारे--

टाइल्स का काम है और खिड़कीया विन्डोज़ है साड़ी लाइट --

फोन है फॉल सीलिंग का कुछ काम टाइप का रेड रेड कुछ रखा हुआ है मार्बल वाइट में और ब्राउन ब्राउन टीप्स के है कुछ फर्श --

खिलोने से टेडी बियर से पिकाचू स ह उपर और भी अ कुछ स्पाइडर मेन वेन है।

मेला टाइप का लगा हुआ है मंदिर के बाहर टाइप का जिसमें बहोत सारे खिलौने विलौने--

बेचे जा रहे है मूर्ति वुर्तिया है एक आदमी साईकल से जा रहा है एक आदमी बाइक --

पर एक बच्चे और एक लेडीज को दिए जारा एक बुडी खड़ी है पीछे ओर एक बाइक आ रहा है।

यहाँ सभी में राइस लाइट्स लगाए हुए है एक पेड़ है बगल में उस पेड़ पे भी लाइटे वाईटे की गयी है।

कार और है जिसे कवर करके रखा गया है एक कार इधर है एक बाइक है दो तिन बच्चे है बाहर पुरे मार्बल का काम किया हुआ है।

एक तबेला वबेला के टाइप्स का कुछ घर वर दिख रहा है दो तीन--

घर के बाहर एक गेट बाउंड्री टाइप्स का किया हुआ है लोहे का--

बोहोत सारे बड़े बड़े पेड़ है पूल तार है।

पिलर्स हैं जिसको रेड और घिया कलर पे किया गया है पाइप वाइप हैं एक बड़ा सा पोल है पोल पे भी कलर किया गया है।